यह इमेज एक कपड़ो की है जिसके लेफ्ट और राइट साइड में बहुत सारे कपड़े टंगे हुए दिख रहे हैं जो की वाइट कलर की लकड़ी के ऊपर टंगे हैं| इनके ऊपर फलाईटे लगी हुई दिख रही जो की वाइट कलर की वाइट कलर का फ्लोर दिख रहा है।

इसमें दुकान बनी हैं जिसका रेड कलर का शोकेस हैं उसके सामने एक दादा वाइट कलर के कपडे पहने खड़े हैं जिसके अंदर कुछ लोग बैठा हैं इस दुकान के बहार एक वाइट कलर की बालटी लगी हैं।

घर के पीछे एक वाइट कलर का बहुत बड़ा घर बना हुआ दिख रहा हैं इसके राइट साइड में पेड़ पौध बने हुए दिख रहे हैं और लेफ्ट साइड में बैयरहाउस बना हुआ दिख रहा हैं जिसके सामने कुछ पानी भरा--

इस इमेज में एक रैक दो तीन रैके दिख रही है जिनके ऊपर बहुत सारी किताबे रखी हुइ है।